दिखाई दे रा है।

यहां पर हमें चेयर्स टेबल्स --

आ रहे हैं।

और एक्टिवा भी दिखाई दे रही है।

सारे व्हीकल भी दिखाई दे रहे हैं।

हमें एक जिम दिखाई दे रही है।

सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें ब्लू बोर्ड --

टैब्स भी नजर आ रहे हैं।

सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

हुए दिखाई दे रहे--

एक ग्राउंड दिखाई दे रा है।

खेलते हुए भी नज़र आ रहे हैं।